फर्श मे बिछा हुआ है वो ग्रीन कट कलर की पट्टी के ऊपर से एक व्यक्ति जा रहा है साइड में एक छोटी बच्ची खड़ी है।